यहां पर एक घर टाइप कुछ पूरा ओल्ड टाइप घर है जो खीला है यहां पर --

यहां पर हाउस दिखाई दे रहा है यहां पे सूखे हुए पत्ते नजर आ रहे हैं यहां पे--

ऊपर पंछी बैठे हुए नजर आ रहे हैं नीचे घास नजर आ रही है।

यहां पर स्वीट नज़र आ रही है यहां पे जंगली घास और नज़र आ रही हैं यहां बड़े विंडो नज़र आ रहे हैं।

यहां बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं यहां एक आदमी बइठा हुआ है यहां पर बैनर ल लगाए हुए हैं पेंटिंग करें हैं दीवाल पर।

यहां पर बहोत सारी लाइटिंग लगाई हुई है। यहां पर पोस्टर लगाया है ऊपर यहां पे बड़े बड़े गेट है।

यहां पर एक आदमी कर रहा है वाइट कपड़े पेहनकर नीचे धोती पेहनकर पैर में चप्पल नहीं पहना है।

हाथ आगे बढ़ाया हुआ है और कान में इयररिंग पहना हुआ है गले मे नेकलेस

दृश्य नजर आ रहे हैं बड़े बड़े विंडो नजर आ रहे हैं।

चिड़िया नजर आ रहे हैं आने जाने का रास्ता नजर आ रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है वायरिंग नजर आ रही है।

और यहाँ पर स्टॉप करे हुए है।